कि इस जमीन में बहुत सारे घास फूस भी उगे हुए दिखाई दे रहे हैं तथा पीछे की ओर कुछ छोटे-बड़े पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और जमीन पर कुछ चीजें कुछ घास फूस के साथ --

इस चित्र में हम देख सकते हैं की हमें एक नदी दिखाई दे रही है एक तालाब दिखाई दे रहा है जी साथ ही हमें उसके साथ बहोत ही बड़े घांस फूस भी दिखाई दे रहे --

शायद ये हमे एक पेड़ दिखाई दे रहा है उसके पीछे बहुत सा खुला जमीन भी है शायद ये हमें खुला नि आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हम देख सकते है कि हमें एक नीले कलर का वेयर हाउस दिखाई दे रहा है।

साथ ही हम जमीन पर देख सकते है कि नीले रंग की दरी लाल और गुलाबी रंग की दरी भी बिछाई गई है साथ ही हम देख सकते है पीछे की ओर दीवार और बहुत सारी खिड़कियां है।